लाइट्स लगी हुई हैं।

यहाँ पे हमें एक फिल्ड दिखाई दे रहा है जिसमे बच्चे बैठे है और --

यहाँ पे एक जेंट्स दिखाई दे रहे है जो की टी-शर्ट पेहेने हुए है।

यहाँ पे हमें तीन मुर्तियाँ दिखाई दे रही हैं और एक लेडीज बैठी हुई हैं जो की मूर्ति के सामने बैठी हुई है।

यहाँ पे हमें एक मंडप दिखाई दे रहा है और वो मंडप पे पांच-छो औरते बैठी हुवी हैं।

और वह गुंफा ईटा से घिरा हुवा है और यहाँ पे --

टोप भी लगा हुवा है और गुब्बारे टंगे हुए मरकरियां भी लगी हुवी दिखाई दे रहीं हैं।

बोहोत सारे फूल के गमले बने हुए हैं कुर्सी-टेबुल रखी हुई है।

यहाँ पे हमें गुब्बारा टंगा हुवा दिखाई दे रहा है और उसके सामने फूल जैसा माला बनाया गया हुवा है उसमे --

और एक जेंट्स चक्का पंक्चर है उसको बनाने का काम कर रहे हैं।

हल्का ग्रीन कलर में पेंट किया हुवा है वाइट कलर में यहा पे तीन घंटिया लगी हुवी है।

लस्सी ढोटली करके और यहाँ पे तीन-चार पोस्टर टंगे हुवे हैं जिसमे तरह-तरह के कुछ लिखे हुवे हैं।